आप बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे हैं नीचे कुछ लोग सब्जी बेच रहे है कुछ लोग मछलियां।

और पीछे बहुत सारे बिल्डिंग्स है।

और सब कु कुर्सियों का रंग लाल है।

बाहर एक कुर्सी पर लोग बैठे हुए है वहां पर भारत का एक झंडा लगाया हुआ है जिस पर तीन रंग है एक ऑरेंज एक सफेद और एक हरा।

और खिड़की एक बड़ा सा है।

ऊपर लिखा हुआ है बॉस कार सर्विस ।

और वहां पर एक लंबा सा डंडा भी है।

नीचे बारह लोग बैठे हुए हैं और खिरकी भी खुली हुई है।

वहां पर एक टेबल है और साइड पर एक मेनू रखा हुआ है।

दूर पर कुछ लाइट जले हुए दिखाई दे रहे हैं।

और जमीन भी नहीं दिख रहा--

और नीचे इनवायलमैटल से जुडा हुआ एक प्यारा सा घर है।

और नीचे का रंग थोरा हरा और सफेद मिक्स है और ऊपर की टीना लगे हुए हैं।

वहां बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने और खाने की चीजें रखी हुई है।

खिड़की पर लोहार लोहा लगा हुआ है और ऊपर तीन खिड़कियां भी है।

नीचे दो लोग कुर्सी को पकड़ कर बैठे हैं कुछ अपने पैरों को मरोड़ कर।

यहां पर एक बहुत पुराना बिल्डिंग है और ऊपर कुछ पकड़े सुखाए है।

वो साइड पर एक घर का आधा हिस्सा दिख रहा है और नीचे थोड़ी सी हरियाली है।

जहां एक बहुत लंबा सा पेड़ है जिसका रंग डार्क ग्रीन है।

यहां पे एक होटल दिखाया गया हैं।

यहां पर एक जगह दिखाया गया है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट वाले स्पोर्ट्स के बाल रखे हुए हैं।

और पीछे बहुत सारे पेड़ है नीचे बारीकी से कटा हुआ ग्रास है।

जो बहुत छोटे छोटे साइज की है और जो बराबरी से काटा गया है।

और वहाँ पर ऊपर एक सेलौटी पे रखा हुआ है जो प्लास्टिक के अंदर रखा हुआ है।

और साथ में हरियाली भी है दूर पर बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है।

यहां पर एक सब्जी मंडी दिखाई दे रहा है।

वहां नीचे एक लड़की बैठा हुआ है।

जो अपनी सब्जियां बेच रहे हैं।

दूर पर भी बहोत सारे औरते है एक लड़का खड़ा हुआ है।

वह कुछ पोज पर खड़ा है।

और उसके साइड पर कुछ सुखा सा ग्रास भी है।

साइड पर ही एक पेड़ भी है और पीछे बहुत सारा पेड़ है वहा पर हरा रंग का घर भी है।

सारे काले हरे डार्क ग्रीन रंग के है।

साइड पर कुछ कपड़े फोल्ड करके रखे हुए है और साइड पर एक जैकेट भी है।